गले में एक नेकबंद है। हाथ में पानी का बोतल है।

लाल रंग का मैट दिखाई दे रहा है।

साइड में दीपक ट्रेडर्स के नाम से दुकान है ऊपर लिखा है रिद्धि चर्म रोग क्लिनिक डॉक्टर मोहित नागपाल।

सामने एक काउंटर दिखाई दे रहा है चेयर पे कुछ लड़कियां बैठी हुई है।

थोड़े बहोत पेड़ दिखाई दे रहे हैं ईंट दिखाई दे रही है कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं एक ग्रील एक--

सामने बोर्ड लगा है स्टेट बैंक ए_टी_एम का साइड मे लिखा है डॉक्टर सुबोध कुमार।

साइड में लिखा है हरि भाई चश्मे वाला यहां पावर एंड फैंसी चश्मे--

दो कैंपर रखे है एक एक्टिवा खड़ी है बाहर--

कुछ यहां पर तलवारें सी चक्कू स नजर आ रही हैं।

और कुछ पौधे और पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ लटकने वाले झूले दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े से पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

श्याम सुपर मार्ट नीचे भी लिखा है श्याम सुपरमार्ट मोबाइल नंबर लिखा हुआ है नाइन फाइव थ्री फाइव ऐट सेवन जीरो सिक्स थ्री ऐट ।

और यहां पर लिखा हुआ है डीज़ल --

सामने कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं।

पूरी एक दुकान नजर आ रही है काफी सारी अखबारी भी रखी हुई है।

और यहां पर एक लड़का भी खड़ा हुआ हैं लड़की का फेस हाइड हैं दीवार पे लिखा है बी ए ।

और यहां शीशा लगा हुआ है जो कांच का है।